पार्टिन नजर आ रहा है और नीचे ग्राउंड में आदमी भी नजर आ रहे है।

इसके बाहर में बहुत सारे इंसान लोग भी हैं।

चर्च का ऊपर में एक क्रॉस बना के रखा गया है।

ये फोटो में डॉक्टर नजर आ रहे।

पीछे में बैडमिंटन नेट भी नजर आ रहा है।

एक दुकान खोला गया है एक दुकान के बाहर में एक चेयर भी नजर आ रहा है।

बेकरी का अंदर में तीन इंसान नजर आ रहा है।

एक बच्चा ने हॉफ पैंट और जूता और टी शर्ट येल्लो कलर का पहना गया है।

ये तस्वीर में एक फर्नीचर शॉप नजर आ रहा है।

और साइड में ए पेर पेर भी है।

एक इंसान का चेहरा को ब्लर किया गया है।